यहाँ पे एक बहुत बड़ा घर है दो मंजिला है।

ढाल दिया गया है और यहाँ पे अभी पलस्तरा का चल रहा है और यहाँ पे तीन-चार मजदूर काम करते हैं और दो मिस्त्री हैं और इधर से पानी लाने के लिए पाइप लगाया --

पे फसल लगाये गए है और यहाँ एक खेत के बीचो-बिच झोपड़ी बनाया गया है और वहां पे आदमी रहते है और अपने फसल को --

यहा पे दुकान को फूल से सजाया गया है और यहां पे मनयाहरी का समान मिलता है।